यहाँ वाहन रखने का स्थान हैं जहाँ पर कई सरे वाहन को रखे जाते हैं तथा दो पहिया वहान के लिए अलग से जगह सुनिश्चित किया जाता हैं।

यहाँ पे खेल का आनंद उठाए जा--